ये एक झू है यहां पर कुछ छोटे छोटे झोपड़ियां बनाई हुई हैं।

इसका पूरा इसके पूरे औजार निकाले गए हैं।

और यहां पर ब्रेक है अ उसके टायर का--

और यहाँ पर एक वे यु वॉशबेसिन है और यहाँ पर एक चॉकलेट कलर का दरवाजा है।